साइड में कुछ सोफे पड़े हुए हैं और ऊपर दीवार पर एक आर_ओ लगा हुआ है।

सामने एक गेट है जिसके उपर बैनर लगा हुआ है इस पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे की तरफ कुछ पेड़ भी दिखाए गए हैं और एक बड़ी सी नाला दिखाया गया है।

उपर की साइड में शीशे की रैक बनी हुई है उन पर कुछ बोतले रखी हैं।

फोटो में एक बैंक का चित्र दिखाया गया है जिसमें सामने एक बैनर लगा है बड़ा सा।

फोटो में एक मार्केट का चित्र दिखाया गया है जिस पर कुछ मयूरी और कुछ मोटरसाइकिल चल रही हैं।

एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर कुछ मेडिलेटर लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक चर्च दिखाया गया है जिसमें सामने की तरफ कुछ आदमी बैठे हुए हैं और एक लड़की बैठी हुई है।

इस फोटो में सामने की तरफ एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाया गया है जिसमें नीचे हरी घास खड़ी है।

इस फोटो के अंदर एक सामने पेंट की दुकान दिखाई गई है जिसपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

और इसकी सजली पर कुछ लाइट लगी हुई है और दो ऐ_सी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

गेटों पे शीशे लगे हुए हैं और बीच में एक लकड़ी का गेट लगा हुआ है जिसपर जाली लगी हुई है।

के अंदर एक ग्रोसरी की दुकान दिखाई गई है जिसमें नीचे कुछ सामान रखा हुआ है।

साइड में रैक पर शीशा लगा हुआ है और इनके अंदर कुछ पैकेट्स रखे हुए हैं और नीचे कुछ कपड़े रखे हुए हैं।

मंदिर के अंदर एक पंखा लगा हुआ और यहां पर कुछ व्यक्ति दिखाए गए हैं।

सर वेलकम टू होटल नाइट इन शिलांग लिखा हुआ है।

दीवारों का कलर सफेद है और उन पर कुछ पेंटिंग्स और कुछ सर्टिफिकेट रखे हुए हैं।

सामने की तरफ छोटे छोटे सोफे और कुर्सियां रखी हैं जिन पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं।

इस फोटो के अंदर एक लकड़ी की टेबल रखी है और नीचे की तरफ कुछ गड्ढे हैं जो की फर्श के अंदर हैं।

सामने एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है और ऊपर छोटे छोटे से वेंटिलेटर लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक बेडरूम दिखाया गया है जिसमें एक बेड पड़ा है उस पर एक सफेद गद्दा है।

सामने की तरफ एक डस्टबिन है जो की स्टील का है उसके ऊपर काली पन्नी चढ़ी हुई है।

सामने दीवार पर एक पर्दा लगा हुआ है और एल_ई_डी दिखाई दे रही है।

नीचे कुछ पत्ते पड़े हैं और बाउंड्री है सीमेंट की बनी हुई।

बोर्ड पर न्यू ताज हेयर सैलून लिखा हुआ है और एक लड़के का चित्र बना हुआ है।

इस फोटो के अंदर एक मैकेनिक की दुकान दिखाई गई है जिसमें दीवार पर कुछ मीटर लगे हुए हैं और एक पेटीएम लिखा हुआ है।

साइड में एक तखत पड़ा है और उसके ऊपर लाल कलर की मशीन रखी हुई है।

इस फोटो में सामने की तरफ सीमेंट के पट बना हुआ है जिसमें कुछ सीढ़ी लगी हुई है।

नीचे साइडों में दो बैनर लगे हुए हैं जिनपे कुछ लिखा हुआ है।

उसकी साइड में एक बोर्ड बना हुआ है जिसपर सुरेंद्र गन हाउस लिखा हुआ है।